यह एक सरकारी स्कूल जैसा लग रहा है.

यहां का दरवाजा पट बंद है और एक इंसान भी खड़ा है.

यहाँ पे गाडी भी है इस्कुटि भी हे.

यहाँ पे बोहोत सुन्दरसा सजाया हुआ है बेलून से.

और मन्नत मांगते हैं और यहां पे सब पूजा भी करने आते हैं.

और उसके अंदर में भी एक व्हाइट कलर के आदमी बैठे हुए हैं.

यहां पे लड़का लोग का टीशर्ट भी है और यहां पे एक लेडीज भी खड़ी है.

और एक यहाँ रिमोट भी है।

और यहाँ आम का भी पेड़ है और यहाँ बोहोत रेड कलर का --

यहाँ कुछ शूटिंग करने वाला जगा हे.

और एक आदमी दिखा रहा है और यहां पर बहुत सुंदर सुंदर का हर तरह का घड़ी है.

इसका पैर मे एक चप्पल हे और निचे मे ईटा या सीमेंट का टुकड़ा हे.

और यहां एक कैमरा भी लगा हुआ है पूरे ब्राइट व्हाइट टाइप से.

यहाँ पे शकरगंद दिखाई दे रही है और दिखाई दे रही है।

बहोत ही सुंदर से सजाया गया है.

और यहाँ पे टी.वी भी लगा हुआ है।

और एक आदमी बैठा हुआ है बस उसका बाल दिखाई दे --

और दो ऐ_सी भी लगा हुआ है.

व्हाइट फ्लाइट है और बगल में रेड फ्लाइट भी और उसके साथ येलो मिक्स है फ्लाइट में.

यह हमें चाय शॉप और कॉफी शॉप की दुकान दिखाई दे रही है.

सब पीठ के तरफ बैठे हुए हैं सबका पर पीछे है.

और वो कुछ कर रही है.